कुछ कुछ डब्बा लेके खड़े हुए हैं कुछ वार्तालाप चल रहा है।

सुंदर सा नजारा है हरी हरी घास लगी हुई है पेड़े भी लगा हुए हैं।